यहां पर पार्क भी दिख रहा है औ--

जो की रेड कपड़ों में कुछ ग्रीन कपड़ों में दिखाई दे रही--

है और मैट का कलर हमें हल्का पिंक ग्रीन दिखाई दे रे--

इस पिक्चर में हमें ब्लैक कलर दिखाई दे रहा है।

इस पिक्चर में हमें यहां पर ब्लैक रंग की--

बोर्ड दिख रहा है जिसमें मिनी मार्केट लिखा हुआ है रेड कलर का बोर्ड है।

पीछे बड़े बड़े चार्ट है जिसमें की कुछ लिखा हुआ हमे--

और कुछ यहां पर टाइल लगे हुई भी दिख रही है।

नजर आ रही एक के हाथ में हमें ब्लैक कलर का फोन --

और ग्रीन कलर का यहां पर फ्लोर दिख रहा है।